आगे बड़े -बड़े अक्षरों में खाने पीने के बारे में दिखाई होटल काफी आगे से सुंदर लग रहा है।

जिससे ये काफी हरा नजर आ रहा है यहां पे इसके अलग रास्ते बने हुए जो काफी खूबसूरत लग रहे हैं ये काफी हरियाली से भरा नज़ारा है जो काफी खूबसूरत लग रहे है जो काफी --

ये सूबा ग्राउंड काफी बड़ा दिख रहा है जो काफ़ी लम्बा-चौड़ा दिख रहा है स्कूल के बाहर कुछ मशीन लगी हुई नज़र आ रही है जो काफी लम्बा-चौड़ा दिख रही है यहाँ पे काफी बसे हैं जिससे बच्चे स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए।

ये काफी यहाँ पे बाइक लगी हुई है और आगे इसके बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जो काफी सुंदर लग रही है। ये बिल्डिंग काफी बडी नजर आ रही है जहाँ पर --

और यहां पर बड़ा सा न्यूट्रल ई स--स्कूल दिखा हुआ है जो काफी सुंदर लग रहा है ये स्कूल काफी लंबा चौड़ा है इसके अंदर काफी विद्यार्थी देखे जा सकते हैं जो यहां पढ़ने के लिए आए हुए नजर आ रहे है।